पार्क है इधर तो ज्यादा पेड़ है उधर वो बैठने के लिए एक बेंच है।

और आजु बाजु में ज्यादा लोग खड़े होक बस के पास जा रही है।

पैक करके ये ये ब्लू कलर का डिजाइन में अच्छा दिख रही है शॉप और ऊपर का सीलिंग का कलर व्हाइट --

ये एक स्कूल का प्लेग्राउंड जैसी दिखा रही है यहां लड़की लड़की लोग सब स्टूडेंट खड़े हो के--

ये एक तिम्पल का एंट्रेंस है इधर वो स्टेच्यू महाशिव का नटराज स्वामी स्टेटू दिखा रही है और--

उधर एक दिवार है और अः गाय को बांध दिए है।

ऊ जहां रेड कलर का ब्लैक कलर का और एक बंदा खड़े होके मोबाइल पर बात कर रही है यह एक साइकिल का मिरर भी दिखा रही--

ये तो एक बैंक का बोर्ड है बंधन बैंक अं ए_टी_एम है एं ए_टी_एम है इधर और इधर एक छत--

पाम बीच में ना पेड़ से अम पत्ता ग्रीन कलर के दिखने में अच्छा दिखाई रहे हैं स--

ये एक पार्क जैसी है पेड़स है सब कुछ इधर अं फॉरेन का पेड्स जैसी है हमारी इंडिया का नहीं है वो --

एक सुनील खरियाना स्टोर है इधर न ज्यादा किराना सब कुछ मिलेगा इधर न कुछ अ अ --

एक अः कुछ फंक्शन चला रहा है ये इधर--

बाजु में दूसरी दुकान है और इसके इसके इसके पास भी एक दुकान है।

बैठा हुआ है वो सब कुछ पानी पे चल रही है सब--

दूर से पौ पौधों हैं उसका पेड़ अं पत्ता भी ग्रीन कलर में--

यहाँ तो कुछ फंक्शन नहीं चला रही है ओ ओ ऐसे ही खाली है फंक्शन हाल सब कुछ लाइट सबकुछ ज-जला हुआ है।